अच्छा दिख रहा है है और चढ़ा चढ़ने को भी अच्छा बनाया गया है अउ फिसलने का भी --

ई है कोई दर्शनी स्थल जैसे दिख रहा यहाँ पर बहोत हैं सारे दर्शन करने आए हुए हैं। हैं--

यहा पर शादी हो रहे है और दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र बांध रहे है ओर फोटो खींच रहे है बहुत सुन्दर सजा हुआ है जैसे फूल लगा हुआ है दुल्हन दुल्हन दूल्हा दुल्हन भी अच्छे दिख रहे है ओर सभी अच्छे दिख रहे है।

ए काला अंगु अंगूर बहोत अच्छे लगते है और अच्छा भी दिख भी रहा है।